यहां पे बहुत सारी पेड़ भी है जैसे कि पहाड़ बहुत ही घना दिख रहा है।

लोग यहां पे आते है टोटो रिक्शे खरीदने और टोटो रिक्शे हमें बाजार में देखने को मिलते हैं लोग इसे चलाते हैं।